यहाँ पर एक बड़ा सा लम्बा सा रूम हैं और उस रूम में टाइल लगे हुए है। फेन भी बल्ब भी --

यहाँ एक बड़ी सी दुकान दिख रही है। उसके बाहार एक वाइट स्कूटी खड़ी हुई है। पेन्स की दुकान है वो।

यहाँ पर एक जंगल है जंगल में बड़े-बड़े शेर खड़े हुए हैं एक मंदिर भी है।

यहाँ एक मौसम दिख रहा है और यहाँ चैनल गेट लगा है सेंट्रल_बैंक लिखा है लोहे का चैनल गेट लगा है।

पानी बह रहा हैरोड भी है स्कूटर वैन खड़ी हुई है।

यहाँ एक बस खड़ी हुई है और यहाँ आसमान भी है और यहाँ पर बहुत सारी सेम बस खड़ी हुई है।